लाइन का तार भी दिखाई दे रहा है।

दुकान के अंदर में लाइटें है जो कि जल रहा है।

एक बोर्ड भी है जो सफेद कलर का है।

तार है जोकि काला कलर का है।

एक बैनर है। जिसमे लिखा है रूपक लॉज ।

पेट्रोल पंप में बहुत सारे लाइटें जला हुआ है।

एक आदमी खड़ा हुआ है जो नीला कलर का शर्ट और जींस भी पहना हुआ है और चप्पल भी है।

दीकान में एक बैनर है जो लिखा हुआ है पुरानी दुकान बाबा धाम पेड़ा भंडार और दो लोग भी है।

बहुत सारे कोल्डड्रिंक भी है और बहुत सारे कुरकुरे भी है।

लाइटे हैं जोकि बाहर में वाला नहीं जल रहा है और भीतर वाला जल रहा है।

इस तस्वीन में एक नदी है।

तस्वीर में दो घर दिखाई दे रहे हैं।

इस तस्वीर में एक पार्क दिखाई दे रहा है जो कि पार्क का गेट बना हुआ है।

बना हुआ है यहां पे।

गेट के बगल में एक बोर्ड दिखाई दे रहा है जो सादा कलर का है।

तकिया भी दिखाई दे रहा है जो की सफेद कलर का है।

बहुत सारी लड़कियां भी एवं कुर्सी हैं।

ओ मोटरसाइकिल भी है ए रिक्शा है साइकल वाला।

बहुत सारे तार दिखाई दे रहे हैं।